यहाँ काट रहा है बाल --

स्कूलिया बच्चा खोज रहा है।

पोस्टर है लगा हुआ बोहोत यहाँ --

बहुत बड़ा खँडहर जैसा है।

पेड़ है बगल पे --

बहोत गाड़ी रखा है। पार्किंग है यहाँ पर।

पानी है उसपे बोहोत नीला-नीला --

पोस्टर है लगाया बोहोत --